बहों सारा पत्ता यहां पर लगा हुआ है।

काफी बाहर तक लोग खड़े हुए हैं और ये दुकान में बहुत ज्यादा भीड़ है।

और दुकान के बाहर बहोत सारी गाड़ियाॅं भी लगी हुई हैं।

जहां पर कई सारी चीजें हैं बच्चों के लिए और यहां पर बच्चों के लिए बहोत सारे झूला लगा हुआ हैं।

और यहां पर भगवान की फोटो भी रखी हुई है।

और यहां पर और बहोत कुछ है।

जहां पर मा सारे फूल पौधे लगे हुए हैं।

और पानी भी ऊपर से गिर रहा है यहां।

मैं देख पा रही हूं कि ये काफी पहाड़ी एरिया है।

जहां पर बहुत सारा घांस उगा हुआ है।

और गमले में बहोत सारा फूल भी लगा हुआ है।

और ए बहोत सारा टेडी बियर भी यहां पर है।

और अमेका प्रोडक्ट्स के भी एक तो मान्या है।

और यहां पर बहुत सारे लाइट भी लगा हुआ है।

जिसके पहाड़ों के ऊपर थे पानी बह रहा है।

मैं देख पा रही यहां एक नर्सरी है।

और काफी सारा पंखा लगा हुआ हैं।